पेंटिंग किया लगता है जैसे की ये बहुत बड़ा है मौसम भी दिख रहा है उजला-उजला है लगता है ठंडा का मौसम है इसमें |

बहुत अच्छा लग रहा है तार भी गया है मौसम बहुत अच्छा है और लगभग सब चीज ठीक-ठाक ही है बहुत अच्छा --